आप देख रहे हैं की ये बकरी का बच्चा है। बकरी काफी ये माशूम दिख रहा है। बहुत बच्चा है छोटा है।